इस चित्र में मुझे कुछ बिल्डिंगे दिखाई दे रही हैं ।

इस चित्र में मुझे एक कार दिखाई दे रही है एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है और पेड़- पौधे दिखाई दे रहे है और पहाड़ दिखाई दे रहा हैं।

इस चित्र में मुझे बहुत बड़ा खेत सा दिखाई दे रहा है इसमें थोड़ा - थोड़ा पानी दिखाई दे रहा है और कुछ पेड़ - पौधे दिखाई दे रहे हैं बादल दिखाई दे रहे हैं।

येह चित्र एक डेम का है इसमें मुझे बेहता हुआ पानी दिखाई दे रहा हैं।

इस चित्र में मुझे एक फैक्ट्री सी दिखाई दे रही है उसमें दो टैंक दिखाई दे रहे है ।

और पहाड़ दिखाई दे रहा है पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है।

और कुछ सीढ़िया सी दिखाई दे रही है पास में गेट सा दिखाई दे रहा है ऊपर बादल भी दिखाई दे रहे हैं ।

पेड़ - पौधे दिखाई दे रहे है निचे कुछ मिट्टी सी दिखाई दे रही हैं ।

चित्र में मुझे बहोत सारी कुर्सियां दिखाई दे रही है लोहे की--